-- घर जैसा बना हुआ है | यहाँ अंदर जाने के लिए दरवाजा दिया गया है | दरवाजा का कलर ब्राउन कलर का दिया हुआ है | ऊपर एक भोपू लगा हुआ है | सामने कुछ रोड लगी हुई है और एक खम्बा दिया हुआ है | सामने एक दरवाजा और दिया हुआ है जो की वाइट कलर और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है।

में सामने तीन टेबल दिखाई पड़ रहे है टेबल का कलर ब्राउन कलर येलो कलर में दिखाई पड़ रहा है टेबल पर कुछ चाकु भी रखे हुए है सामने एक टंकी रखी हुई है जो की सिल्वर कलर की दिखाई पड़ रही है पीछे एक अलमारी रखी हुई है जो की ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है।

बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो की व्हाइट कलर मे दिखाई पड़ रही है | इसमे कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग का कलर व्हाइट कलर ब्लू कलर मे दिखाई पड़ रहा है | सामने कुछ लोग काम कर रहे है सामने कुछ और भी मकान बने हुये है जो की ग्रे कलर मे दिखाई पड़ रहे है।

जैसे दिखाई पड़ रहा है जो की दो खंड का बना हुआ है ऊपर लेडिज का स्टेचू दिखाई पड़ रहा है | नीचे जेन्ट्स का स्टेचू दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ बाइक दिखाई पड़ रही है बाइक का कलर ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रहा है बगल में कुछ साइकिल भी खड़ी है नीचे एक कार्पेट भी बिछी हुई है जो कि रेड कलर की है।

शेडो दिखाई पड़ रही है | नीचे कुछ जाली जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लैक कलर की दिखाई पड रही है | सामने बहुत सारी कारें भी खड़ी है | कारो का कलर सिल्वर कलर व्हाइट कलर और ब्राउन कलर मे दिखाई पड़ रहा है | सामने एक ट्यूबलाइट भी दिखाई पड़ रही है पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रहे है।

जैसा दिखाई पड़ रहा है ऊपर रेड कलर का बेनर लगा हुआ है | नीचे काँच के ग्लास लगे हुये सामने एक स्टेचू बना हुआ है | उसने कुछ कपड़े पहने हुये है सामने एक बाइक दिखाई पड़ रही है | एक स्कूटर भी दिखाई पड़ रहा है | सामने कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई पड़ रही ह ऊपर कुछ खिड्कियों में ग्लास भी दिखाई पड रहा है।